इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रहा है।

यहाँ गोभी दिखाई दे रही है।

दोनों तरफ पॉट लगाए गए हैं।

यहाँ अलग-अलग सामान रखी गयी है।

सामने में एक काउंटर दिखाई दे रहा है।

पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

उसे एक आदमी चलाता हुआ दिख रहा है।

इस पर एक लड़का बैठ कर फोटो खिचाता हुआ नजर आ रहा है।